एक खाने का टेबल है जिस खाने के टेबल में दो प्लेट में भरी मैगी रखी हुई है और अगल-बगल खाली प्लेट रखे हुए हैं।

एक स्टेशन है जिस स्टेशन में ट्रेन की पटरी खाली है और बगल से स्टेशन बना हो जिसमे एक पानी का नल लगा हुआ है।